यहाँ पे कोई पोरोग्राम हो रहा था और यहाँ पे पोस्टर में कुछ नेताओं का फोटो है और भगवान जी भी है यहाँ पे भागवत गीता हो रहा था ऐसा मुझे लग रहा है और--

बस हैं और ये बस शायद नया हैं और इसे बहोत ही अच्छा सजाये हैं इसका ओपनिंग कर रहे हैं।